यह एक बड़ी सी हवेली आकार का बंगला दिखाई दे रहा है जिसे लाल रंग से रंगा गया है सामने कुछ खाली जगह पड़ी हुई है जिसके आस-पास छोटी-छोटी हरी घास दिखाई दे रहे है।

यह एक बड़ा-सा अस्पताल दिखाई दे रहा है जिसकी दिवारे काँचों से बनी हुई है| सामने एक गाड़ी दिखाई दे रहा है जोकि उजले रंग का है| एक आदमी दिखाई दे रहे है जिसके हाथ मे लाल कलर का थेला है|

और ये लाल कलर का कपड़ा पहना हुआ है दोनों तरफ मिट्टी दिखाई दे रहा है और एक सीढ़ी दिखाई दे रहा है जिसके थ्रू आदमी नीचे जा स --

इस पे आई इंडिया लिखा हुआ है दुकान के अंदर कुछ टेबल्स रखे हुए है जो की ब्लू कलर का दिखाई दे रहे है।

यह एक बड़ा सा विश्वविद्यालय है जो कि पीले रंग की गई है सामने बाँस के कुछ लकड़ी रखे हुए हैं जिसपे बहोत सारे कपड़े भी सूखने के लिए दिए गए हैं।

सामने दो गाय बैठी हुई हैं जो काले रंग की है पीछे एक बड़े-सी मूर्ति बनी हुई है जो की भगत सिंह का है।